यह बालक छात्र वास का गेट है जिस पर बालक छात्रावास की बिल्डिंग का रंग क्रीम रंग का है।

गुरूद्वारे का कलर सफ़ेद है।

दुकान के बाहर कई सारी मोटर-साइकिल भी पार्क की गयी है।

चर्च के अंदर बोहोत सारी सजावट भी हो रखी है और चर्च के अंदर एक बोहत बड़ी ईसामसीह की फोटो भी लगी हुई है।

इस चित्र में एक कैफ़े काफ़ी डे नाम की दुकान दिख रही है।

कांच का दरवाजा भी है और एक बोहत बड़ी कांच की खिड़की भी लगी हुई है।

इस चित्र में बहुत सारी कार खड़ी हुई हैं।

किस-और ये लड़का किसी कि शादी में गया हुआ है।

आदमी अ और उस की वाइफ और उसका एक बच्चा है।